इस फोटो में बहुत सारे पेड़ पौधे हरे हरे दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के बाहर में कुछ कुछ समान भी रखा हुआ है।

इस दुकान के बाहर कंचन फैशन वस्त्रालय लिखा हुआ है।

दीवाल में अच्छे अच्छे पेंटिंग बने हुए है।

इस फोटो में बहुत सारे मुर्गे दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़का है एक औरत भी खड़ी है।